वोटुवेल सौ ऊर्जा प्लेट के द्वारा चल रही है।

और सौर ऊर्जा प्लेट के पास एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

मेन रोड के पास में सरकारी नलका भी गड़ा हुआ है।

और एक लाइट भी लगी हुई है।

और छोटे छोटे इधर उधर हरि हरि पत्तियां भी उग रही है।

कार में कुछ आदमी बैठते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।

यह मंदिर के मेन गेट पर ओम भी लिखा हुआ है।